दिखाई दे रही है | एक गाडी का कलर ऑरेंज कलर एक गाडी का कलर रेड कलर का है । एक इमारत भी दिखाई दे रही है जो बहोत ऊची --

बाउंड्री के उस साइड पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है जो हरे भरे है एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे है और ऊपर आसमान भी दिख रहा --

दिखाई दे रहे है और बहोत सारा सामान भी रखा हुआ है । दुकान के बाहर भी सामान रखा हुआ है एक गाडी भी दिख रही है ।

इस तस्वीर में रैक रखी हुई दिखाई दे रही हैं | रैको में बोहोत सारे पैकेट्स रखे हुए दिखाई दे रहै हैं ।